माथा में बहुत सारा क्लिप भी लगा के रखा है।

ये पिक्चर में बहुत सारा फ्लावर पॉट रखा है।

टेबल का ऊपर में पानी बोतल है।

कला में एक चुन्नी है।

बड़ा बड़ा पेड़ भी लगा के है।

ये पिक्चर में येलो कलर का पैकेट बहुत सारा है।

लड्डू भी बहुत सारा है।

पीछे में ब्ल्यू कलर का पर्दा टंगा के है।

पीछे में बड़ा बड़ा पेड़ भी लगा के है।

बस के अंदर में हिंदी से कुछ लिखा हुआ है।

ये पिक्चर में गाड़ी का एक खिड़की है।

घर का बाहर में फ्लावर पॉट भी रखा है।

ग्रीन कलर का एक पोस्टर लगाके है।

बहुत सारा ग्रास उग के हैं।

खिड़की भी खुला हुआ है।

खिड़की में रेड कलर का पर्दा टंगा के है।

यह पिक्चर में एक टेबल है। टेबल का ऊपर में ब्लैक कलर का कारपेट बिछा के हैं और दो कुर्सी है और फ्लावर पॉट भी रखा हुआ है।